यह एक घर बन रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग काम --

हम लोग गैराज बोलते हैं। यहाँ गाडियाँ सुधारी जाती हैं। चाहे गाड़ी कितनी भी खराब हो।

जो की मिथिला से बुक सेंटर के नाम से जानी जाती है। हमें --

यहाँ पर बहुत सारा गिट्टी सीमेंट से मिला मसाला डला है और बहुत सारे लोग कार्य कर रहे --

यह एक अस्पताल है। जहां की एक डॉक्टर और एक नर्स या कम्पाउण्डर खड़ा है।

किताबे पढ़ना और उनसे ज्ञान सीखना बहुत अच्छा लगता हैहम किताबों को पढ़ते हैं।